पेड़ का घास एकदम हरा-हरा दिख रहा है हमको यहां पर मोटर साइकिल है लगता है शायद कावा साह की है।

बाजार में फल का दुकान है ढेर सारा | हमको फल दिख रहा है नारंगी दिख रहा है केला दिख रहा है ।

सेब दिख रहा है अंगूर दिख रहा है वाटरमेलन खरबूज दिख रहा है।

उसमें कुछ लिखा हुआ है वो तो नजर नहीं आ रहा है हमको।

हरा-भरा घास है पेड़-पौधा है ढेर सारा एकदम सामने में दम बहुत दूर पे एक --

शॉप में नींबू मिर्चा टांगा हुआ है ईनो ईनो दिख रहा है इनो का रैपर दिख रहा है सामने में फैन दिख रहा है हमको।

फूल का कलर येलो है ई लड़का है लड़का पहने हुए ट्राउजर ऊपर बहु अच्छा लग रहा है देखने --